अच्छे तरीके से मान्यता पूरी होती है यहां लोगों की यहां पे आते हैं लोग।

लिखा हुआ है और आलू कुलचा होता है नान होता है और बहुत ही--

गाड़ी आगे से खोली गई है इसका इंजन चेक करने के लिए और--

नए घर बने हुए हैं और--

बिल्डिंग बहोत ही बढ़िया अच्छे से यहां पे सामान को रखा गया है।

बोर्ड लिखा हुआ है पार्किंग है रेस्टोरेंट और बहोत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है।

और एक आदमी यहां पे खड़ा है और हरे-हरे वृक्ष यहां लगे हुए पार्क में जाने के लिए दो रास्ते बने हुए हैं।